ऊपर में पेड़ का पत्ता दिखाई दे रहा है।

और घर का ऊपर में सिंटेक्स दिखाई दे रहा है।

मिर्चा का सामने में बैंगल्स दिखाई दे रहे हैं।

गाजर भी दिखाई दे रहा है रेड कलर में--

और उसका सामने में बहुत सारा बंम्बू दिखाई दे रहा है।

इसमें एक बिस्तर दिखाई दे रहा है।

जिसका सामने में बहोत सारा कपड़ा पैक कर के दिखाई दे रहा--

जिसका अंदर जाने के लिए दरवाजा दिखाई दे रहा है।

इसमें टीना से बना हुआ एक छत दिखाई दे रहा है।

और उसका सामने में लाइट पोल्स और वायर भी दिखाई दे रहा है।

में ब्लैक कलर का कार दिखाई दे रहा है।

आगे में ब्लू कलर का मशीन दिखाई दे रहा है।

ऊपर में फैन दिखाई दे रहा है।

और फैन के सामने में बहोत सारा लाइट दिखाई दे रहा है।

और पिक्चर में इंसान भी दिखा--

जिसका आस पास में बहुत सारा पेड़ पौधा दिखाई दे रहा है।

और पीछे में बहुत बरा पहाड़ दिखाई दे रहा है।

ऊपर में बोर्ड दिखाई दे रहा है रेड कलर में।

और पीछे में एक आदमी घर का अंदर जा के भी दिखाई दे रहा है।

जिस में आगे का दो पिलर दिखाई दे रहा है और अंदर जाने का दरवाजा दिखाई दे रहा है।

इसमें एक घर दिखाई दे रहा है खुला घर।

और साइड साइड में लोहा से बना हुआ पोल दिखाई दे रहा है।

और बीच में लकड़ी का पोस्ट भी दिखाई दिखाई दे--

इसमें सजाया हुआ स्टेज दिखाई दे रहा

जिसके बीच में सीट दिखाई दे रहा--

और फूल दिखाई दे रहा है।

और ऊपर में विंडो दिखाई दे रहा है ग्लास से बना हुआ।

इसमें बहोत ज्यादा बॉक्स दिखाई दे रहा--

और उसका ऊपर में लकड़ी से बना हुआ टेबल भी दिखाई दे रहा है।